इस फोटो में हमको फ्लोर दिख रहा है जिसका फर्श है वाइट ब्लैक और रेड कलर का अ खंबा दिख रहा है। एक हमे बना हुआ फर्श--

इस फोंटो मै हमे काफी सारे डॉक्टर्स दिख रहे है एक टेबल दिख रही है दो का जिसपे की ब्लू कलर का कपड़ा डला हुआ है एक अ बोतल रखीं दिख रही है।